यहां पर बहुत सारे टेबल रखे गए हैं।

यहां पर बहुत सारे चांदी के समान है।

यहां एक दुकान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे गए हैं।

यहां पर एक घर है।

एक टोटो के ऊपर एक बल्ब है।

यहां पर बहुत सारे पहाड़ है यहां पर बहुत सारे कुआं है।

यहाँ पर बहुत सारे लड़के डांस कर रहे है।

इसमें बहुत सारे शिशे लाइट पँखे लगे हुए है।

वहां मूर्ति के पीछे छह पिलर हैं।

यहां पर एक टेबल रखा गया है।

जिसमें बहुत सारे घर है।

यहाँ पर बहुत सारे लाइट लाइट लगाई गई है।

और एक होटल में एक आदमी खड़ा है।

एक एक लड़का दिख रहा है एक लड़का दौड़ रहा है।

यहां पर एक प्लेट दो चम्मच और तीन कटोरी रखी गई है।

अलग-अलग स्टाइल के टॉयलेट है। यहां पर एक कूट रखा गया है।

यहां पर एक लड़का खड़ा है। उसके पीछे एक लड़का फोटो खींच रहा है।